और उसके नीचे बहोत ही भीड़ हैं बहोत से लोग हैं और टेबल और कुर्सियां भी लगी हुयी है और नीचे लाइटस भी लगी हुई हैं।

और थोड़े बहोत झाड़ियाँ हैं और एक नोटिस बोर्ड भी टंगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सेफ्टी फर्स्ट --

और एक जन बैठ के अपना फ़ोन यूज़ कर रहा है और साइड में दो जन और भी बेठे हुए --

यहाँ पर काँच के अंदर भगवान शिव और माँ पर्व पार्वती की मूर्ति रखी गयी है और काँच के बाहर ही एक --

और उसके चारों तरफ कार के बहोत सारे पार्ट्स फेके हुए हैं।